यहाँ पे शादी हो रहा है और शादी में बहोत अच्छे से सज़ावट किया गया हैं चारों साइड डी.जे. लगा हुआ है लाइट लगा हुआ है।

क्या-क्या बहुत सारे फूल है पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं चारों साइड से देखने में बहुत ही हरियाली लग रहा है ।

जो है फैक्ट्री में काम करने से लोगो को पैसा दिया जाता है । पैसा कमाते है यहाँ पे और बहुत सारे लोहे भी यहाँ पे इसके देखने के लिए ।